मैं देख पा रही हूं यह एक क्लास रूम है यहां बहुत सारे बेंच है।

वहां एक आदमी माक्स लगाकर ड्रेस पहने हुए खड़ा है और वहां कुछ परदे लगे हुए हैं कुछ फर्नीचर के--

कुछ ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं।

लोग अपने छत पर ऊपर नीचे चारों तरफ भीड़ लगाए हुए हैं।

और चारों तरफ पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

पार्क में लोहे के कुछ छड़ के सीढ़ियां बनी हुई रखी हुई है।

कॉलेज में बहुत सारी खिड़की है।

एक कुत्ता भी बैठा हुआ है दो वर्कर वहां पर है।